यहां पर पास में सड़क बनी हुई है।

यह पिक्चर एक गार्डन की है।

किसी होटल के नीचे के रिसेप्शन की है यहां पर बैठने के लिए बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

ये परांठे लाल लाल सीके हुएं हैं पराठे की प्लेट एक बेंच पर रखी हुई है।

रखी हुई है कुछ फाइलें बिलकुल सफ़ेद हैं कुछ फाइलों का कलर बिलकुल अलग अलग --

दो मंजिल की एक बिल्डिंग बनी हुई है सड़क के सामने दो तीन औरतें चल रही है सड़क पे --

और एक दो खंबे गड़े हुए है सड़क पे साइड में एक कार खड़ी--

यहां पर दो टेबल लगी हुए हैं बैठने के लिए ग्रीन कलर के सोफे लगे हुए हैं।

सब बुक्स अलग-अलग तरह की है कुछ बुक्स बच्चों की है कुछ बुक्स छोटो की है।

में आने जाने की रास्ता है यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है पास में एक पेड़ लगा हुआ है।

गार्डन के अंदर आधी जगह पर घास है आधी जगह खाली है।